और बहुत सारे पेड़ पौधे भी सामने से नजर आ रहे हैं।

और बहोत सारे लेडिस लोग कर रहे हैं इस त्यौहार को और बहोत ही ज्यादा मात्रा में पानी भी दिख रहा है सामने में--

पानी में कुछ तैर रहा है जो कि रेड कलर का बॉल टाइप के दिख रहा है छोटा सा है।

एक लाइट भी लगा हुआ है जो कि बुझा हुआ है और नीचे में कुछ बोडे में बर बर के रखा हुआ है।

साइड में एक पुतला लगा हुआ है जो कि मूर्ति बनाया गया है और उसके साइड में लेजर लाइट भी चलाया गया है।

यह एक रेस्टोरेंट है जोकि घासपूस से बना हुआ है जिसमें बास का लकड़ी भी लगा हुआ है।

मछली की दुकान भी है जो कि मछली खरीदने के लिए कोई कांस्टेबल या हवलदार टाइप के कुछ आदमी है।

और यहां पे एक कार भी सामने में दिख रहा है और दो आ वर्कर भी हैं।

यह कोई बैंक के सामने का तस्वीर है जो की स्टेट बैंक के सामने का है एस_बी_आई का उसमें बोर्ड लगा हुआ है।

और एक आदमी एक दो आदमी खड़ा भी है और ड्राम भी रखा हुआ है।